अब बैंक हमारे लिए बोहोत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी व्यवस्था है यह --

अरे वाह! कितना सुन्दर दृश्य है ये। ये तो नदी बह रही है और बगल में उसके खेत बिल्कुल एकदम हरे भरे लगे हुए है और आसमान पर बादल ऐसे दिख रहे हैं जैसे कुछ उतरती हुई अप्सरा लग रही हो आसमान से।

और ये कॉलेज तो वैसा ही कॉलेज दिख रहा है। अब हमको फिर से अपने पुराने दिन याद आ गए कॉलेज के कॉलेज में जब हम पढ़ा करते थे तो बहोत ही आनंद उठाया करते थे पढाई --

अरे शादियों में डीजे का लगना बोहोत ही मजादायक है और ये जब शादियों में जब हम लोग बरात जाते हैं तो डीजे घमाघम बजता है। बिहारी गाने में तो बड़ा ही आनंद आता है । लोग बड़े थिरकते हैं और नाचते हैं ।

लेकिन अब हम लोग देखते हैं की इन जगह पर हर एक चीज़ मिलने लगी हैं जिसको हम आम भाषा में शॉपिंग मॉल कहते हैं।

यह किसी विवाह का दृश्य लग रहा है ।